यहाँ वाइट कलर का दीवार हैं उसमें पेंटिंग लगी हुई हैं और वाइट कलर का पर्दा पड़ा हुआ हैं एक बेड हैं |

यहाँ पेन टांगा हुआ है | यहाँ टैटू लगे हुए हैं | यहाँ फेविकोल के डब्बे रखे हैं |

वे ये सामने कुछ आर आ लोग चलते दिखाई दे रहे हैं।

जोकी वाइट फ्रोज़े और ग्रे कलर में है।

सामने कुछ सफेद और गुलाबी कलर के फूल नजर आ रहे हैं हरी-हरी पत्तियां नजर आ रही है।